ये ठो एक बसके के में मंदिर कि तरफ बनाया गया है और ये बसका आगे तरफ शीशे का गेट बनाया गया है और बसकर के अंदर--

घाता के अंदर है और एक आदमी मोटर साइकिल में बेठ कर के--

एक ठो एक सरकरी भवन है और ये भवन बहोत ही बड़ा है और इहा एक--

और यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है और रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़ा है और यहाँ एक रेलवे खड़ा है और बहुत लोग आए हुए है यहाँ --

--ठो एक चाय दुकान हैं और ये चाय दुकान में बहोत सारा कुर्सी और बहोत सारा टेबल रखा हुआ है।